इस रेस्टोरेंट के बाहर लिखा है रफीक वाशी नाश्ता कॉर्नर ।

यह मूर्तियां सफेद और गोल्डन कलर की बनी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इन ट्रको से हाईवे पर जाम लगा हुआ है।

इस गेट के अंदर बहोत सारे लाइट के ट्रांसफार्मर लगे हुए है।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

उस छत पर एक तोफ़ छोटी सी रखी हुई है।

एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रही है इस कंस्ट्रक्शन साइट पर--